पानी वगैरह भी दिया जाता है। --

ये एक दृश्य खेत का है जहाँ हम खेत में चारों तरफ पेड़ पौधे और मैदान में घास लगी हुई है।

ये एक होटल है। यहाँ पे व्यक्ति अपने परिवार के साथ आते हैं।